पर में घर भी है।

यहां में घर बना रहे हैं।

और गेट का कलर है व्हाइट।

एक बड़ा सा घर है।

दीवार का कलर है व्हाइट ब्लैक ।

नीचे में कारपेट भी है।

और दुकान का कलर यहाँ पर येलो है।

खाली यह सब बहुत ज्यादा है।

में एक फोटो भी चिपका की है।

और दुकान करने में टॉयलेट का बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे है।

पिंक कलर का एक बड़ा सा पोस्टर भी लगा के है।

येलो कलर का कुछ है।

दरवाजा भी दिखाई दे रहा--

बच्ची और बहुत ज्यादा गर लोग है।

सामने मे गच्ची लोग भी है।

और ऊपर में साइड साइड में अलग अलग से कुछ कुछ बना के है।

पिह है सामने में--

पर्पल कलर है

वो साइड में एक छोटा सा घर भी है।

ये एक घर का अंदर में है।

ऊपर ऊपर में फैन भी है।

और कोइ कोइ घर बना रहे हैं और कोई कोई घर बन गया वाला है।

और गाड़ी के सामने में एक आदमी भी नीचे में झुक के बैठ रहा है।

सामने में इंटा से बनाए ला घर लोग हैं।

लाइट भी जल रहा है।

और घर का बाहर में बहुत ज्यादा गच्छि लुबी है।

ये एक मंदिर है।

इसका मुह भी येलो है।

और एक साइड में एक डस्टबिन भी है बड़ा वाला।

दुकान में बहुत ज्यादा समान लोग भी है।

और टेबल के ऊपर में एक भी है।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

और गाड़ी का कलर है रेड ।

घर का बाहर में बहुत सारा गंदा लोग भी दिखाई दे रहे है।

गेट भी दिखाई दे रहा है।